और यहां मुझे लाल कलर की बास्केट भी रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

यहां आप देखेंगे कि कुछ पेड़ पौधे भी लगे हुए देखने को मिल रहे हैं।

इन फूलों का कलर येलो और ऑरेंज है।

यहां मुझे कुछ पालीथीन भी डाली हुई देखने को मिल रही है।

यहाँ मुझे ग्रीन कलर की कारपेट भी बिछी हुई दिखाई दे रही है।

यहां मुझे एक अ ज्वेलर्स की दुकान खुली हुई दिखाई दे रही है।

यहां स्विमिंग पूल में पानी भी भरा हुआ दिखाई दे रहा है।

की गेंदे के फूलों से सफेद और हरे गुब्बारों से सजी हुई है।